उपर बहुत सारे बड़े-बड़े पत्थर दिखाई दे रहे है और पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है।

और एक पीछेके साइड मै लड़का है जो मास्क लगाके है और काटा भी है जीस्से मच्छी गिनी जाती है।

इमेज मे म्मा च्चिया दिख रही है और एक स्त्री मच्छी बेच रही है।

टूव्हीलर खड़ी हुई है जिसका कलर ब्लॅक है और बहुत सारे लेडीस और जेन्ट्स दिखाई दे रहे है जो पूल पे से जा रहे है।

इमेज मे एक आदमी बैग लेके कुछ जमीन का मेजरमेंट ले रहा है टाइल्स का--

इस मे मच्छी मार्केट दिखाई दे रहा है और बहुत सारे लेडीज और जेन्ट्स खड़े हुए है और बहुत सारे लेडीज और जेन्ट्स मच्छी बेच रहे है बहुत सारे मच्छी है उपर आसमान है।

पीछे दीवार पे स्टार बना हुआ है उसके अंदर एक मूर्ति रखी हुई है।

इमेज मे एक लड़का दिखाई दे रहा है उसके साथ एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है।